साइकिल खड़ी हुई है लोग आते हैं पैसे निकलते हैं उन्हें जितना ज़रूरत है डिपाजिट करते हैं।

सामने ऑडियंस उनका डांस दिख रही है तीनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं पहले वाले के सबसे लंबे हाइट है और उससे कम इसके सबसे छोटी --

एक गांव है जहाँ भैंस बंधी हुए एक लड़का खड़ा हुआ है एक लेडीज खड़ी हुई है।

लड़के हैं और दो लड़कियां एक लड़की जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी एक ने लाल कलर की पेन्ही --

ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ मैच खेल रहे हैं पुरे ग्राउंड में ऑडियंस बैठी हुई --

क्राफ्ट बना रहे | एक ने ब्लू कलर का कपडा पहना है जीन्स पहनी है एक ने व अ पीले कलर की टी-शर्ट पहनी है एक ने वाइट कलर की पहनी है एक ने ब्लू एक ने चेक्स कलर की |

तराजू से तोल के देते साइकिल रखी हुई है इन्होने धोती पहन रखी है एक ने टी-शर्ट और जींस पहन रखी है ।

आदमी है ऑरेंज ब्लू कलर है मिक्की माउस में बच्चे बहुत अच्छे से झूल रहें हैं।

क्योंकि इसका प्रभाव इतना तेज है कि वो उस पानी बेहते जा रहा है बेहते जा रहा है ब्लू कलर का पानी --

तीन मशीन लगी हुई है तीनों पे तीन करेंगे तो फटाफट कम होगा।

ऑरेंज कलर का एक सरकारी काम होता यहां पेड़ रखे हुए एक दो तीन चार पाँच छे लाइन --

बादल छाए हुए हैं लोग यहां आएंगे एंजॉय करेंगे पत्थर ही पत्थर है पत्थर पे चलना --